नजर आ रहे हैं बिल्डिंग के सामने एक बड़ासा गेट है गेट के सामने ही एक--

यहाँ गाड़िया भी नज़र आ रही है बच्चे सब बात करते हुए भी नज़र आ रहे है।

आमने सामने बाजु में बहुत सारे नारियल के पेड़ भी दिखाइ दे रहे है।

पानी पाइप से डाल रही है यहां एक बड़ी सी इमारत दिखाई दे रही है।

केक का कलर ब्लैक दिखाई दे रहा है।

नजर आ रहा है वहां पे तीन चार घर भी दिखाई दे रहे हैं।

सामने हनुमान जी की मूर्ति बड़ी सी दिखाई दे रही है।

उसके सामने एक स्कूटी भी रखी हुईं हैं।

ये एक रेलवे स्टेशन है जहा पे लाइटिंग भी लग चल रही है एक--

ये एक गार्डन है जहां पे बहुत सारे बड़े बड़े पेड़ भी है।

दुकान में दो लड़के भी काम करते हुए नजर आ रहे हैं।

उनके ड्रेस वाइट कलर के नजर आ रहे हैं।

तब जो बच्चों को काम आते हैं वो नजर आ रहे है।

बड़ी सी बिल्डिंग दिखाई दे रही है।

आयेटो वाले सब जा रहे हैं यहां गाड़ीयां भी बहुत सी जा रही है।

यहां पे एक चाइनीज़ फास्ट फूड दिखाई दे रहा है।

यहाँ एक समुन्द्र नज़र--

और बहुत सारे लोग यहां घूमने आए हुए हैं।

वो वहां पूजा कर रहे हैं।

यहाँ पे टाइपिंग क्लासेस चल रही है।

वहां एक आदमी खड़ा होके कुछ--

दिखाई दे रहा है आजू बाजू में भी घर दिखाई दे रहे हैं।

ये एक होटेल नजर आ रहा है वहां पे बहोत सारे लोग खाना खा रहे है।

यहाँ पर एक आई_सी_आई_सी बैंक का ए_टी_एम दिखाई दे रहा है उसमे एक--